गेट में लोग जा रहे हैं और वापस बाहर आ रहे हैं।

पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और वहीं इकट्ठा हो रहा है।

और ये अस्पताल का कलर जो है --

ये एक गुरुकुल कोचिंग सेंटर है जिसमें क्लास --

और ऊपर जो है हरे कलर की नेट और लगी हुई है वो लड़का डिफेंस कर रहा है।

और यहां पे एक एयर क्राफ्ट खड़ा हुआ है और यहां पे एक रोड है।

पीछे एक बाल्टी रखी हुई है और ये लड़कियाँ जो है एक एक ही पोजीशन में डांस कर रही हैं यहाँ पे एक काले कलर का पर्दा लगा हुआ है।

में जो है दो खाने की तीन खाने की चीजें और नींबू रखा हुआ है कुछ प्याज रखी हुई हैं।

मंदिर के जो द्वार है वो काले कलर का है और एक अंदर पीले कलर का द्वार है।

और एक आधी गाड़ी दिख रही है और यहां पे जो है पीले कलर का कुछ बिल्डिंग टाइप बना हुआ है।

एक रोड गया हुआ है जिसपे कुत्ता खड़ा हुआ है।

पेड़ लगा हुआ है। पेड़ पे सफेद कलर किया गया है। आधी जड़ पे है उसकी आधे पेड़ पे और जो है यहाँ से एक रोड गई हुई है अंदर द्वाड़ पे।

गेट जो है वो एक उस साइड को खुला हुआ है और एक इस साइड को खुला हुआ है।

जो है एक बिल्डिंग बहोत बड़ी-बड़ी हैं और अच्छा कलर है उनका।

जिसमे कुछ नीले और सफेद और लाल कलर की बोतल रखी हुई है जैसे कि जैसे लग रहा है वह एसिड बोतले हैं।